तस्वीर में एक व्यक्ति सामने टेबल पे बैठा हुआ है उसकी बाहैं ऊपर की ओर मुड़ी हुई है शर्ट --

इसमें सफ़ेद कलर का एक मकान दिख रहा है जिसमें सामने की ओर एक लाल रंग का गेट है पीछे एक मकान में एक हल्के हरे रंग का एक गेट दिख रहा है।

बीच में से काली पट्टी दिख रही है लंबी अगल-बगल में जो दीवाल की बॉउंड्री वॉल बनी हैं।

सामने एक व्यक्ति ने कत्थे रंग का कुछ शर्ट पहन रखा है उसकी दाढ़ी है और सफ़ेद रंग की टोपी लगी है जबकि सैमने एक हरे रंग का शर्ट पहने व्यक्ति तस्वीर जैसी दिख रही है।

तस्वीर में कुल तीन महिलाए दिख रही है जिन्होंने साड़ी पहन रखी है एक महिला के हाथ में लाल रंग का पर्स है और उसने चुडिया पहन रखी है सफ़ेद रंग की--

छत के ऊपर लाल लाल कुछ सामान जैसा कुछ रखा हुआ है और बिच में एक व्यक्ति बैठा दिख रहा है।

सामने की और एक पेड़ जैसी आकृति बनी है जो अँधेरा होने के कारण धुंधली दिख रही है।

एक बड़े से हॉल में बहुत सारी सफ़ेद रंग की चेयर रखी है जिसमे बहुत सारे लोग सामने की तरफ देख रहे है और बैठे हु --

एक सफ़ेद कलर का बड़ा सा मंदिर दिख रहा है जिसके सामने में एक स्कूटी खड़ी है जमीन पर एक हवन कुंड बना है जो लाल सफ़ेद और नीले रंग से है।

पीछे हरे रंग का एक बड़ा सा झाड़ दिख रहा है और एक लाल कलर का झंडा मंदिर पर लगा है।

लोहे के एंगल की डिज़ाइन बनी है जिसमें कुछ बच्चे खेल रहे है पीछे लंबी -लंबी तीन चार घसरपट्टी है जो --

एक सफ़ेद कलर की कार दिख रही है जिसमें नीचे नंबर प्लेट पर --

काले रंग से डबल सी वन सेभेन केएम डबल नाइन जीरो एइघट ऐसा लिखा है।

जमीन में गिट्टी जैसा दिख रहा है लाल रंग का सामने में एक कपड़ा बिछा है बगल में एक पॉलीथिन पड़ी है बगल में एक खम्भे जैसा दिख रहा है।

एक स्टेज के ऊपर कुछ लड़किया बैठी हुई है जिन्होंने रंग-बिररंगे सारी पहन रखी है पीछे कुछ लड़किया खड़ी है।

हरे रंग के एक लम्बे पाइप से वह पेड़ो में पानी दे रही है निचे की जमीन हल्की सफ़ेद है।

नदी के अंदर कुछ लोग दिखाई दे रहै है जिसमें दो व्यक्ति ने धोती पहन रखी है बगैर शर्ट के है और दोनों के हाथ में अगरबती --

लाल का एक ने कुर्ता पहना है एक ने काले रंग का कपड़ा पहन रखे है पीछे सीमेंट का एक बहुत बड़ा पूल है।